दो हजार उनिश पेनतीस का गठन होयेडो है जवाहर उच्च मध्यम विद्यालय कुचामन सीटी नागोर की फोटो है इक आग गार्डन है बढ़िया दिख रहा है टेंकर भी खड़ा हे बढ़िया लगया है।

यह सामने के स्कूटी भी खड़ी है अंदर है ओर बाहर बोर्ड भी ला रहियो है जो की दीवार का बदिया पेड़ पौधे भी लगे है बढ़िया लाग रहिया है द्रश्य हे बाहर--

कोई संगीत है अपने दुकान के दुकान अंदर बाईक पे खड़ी है ओर पास में दुकान सेटर बंद है।

यहाँ फोटो है एक सरकारी स्कुल की फोटो हैराजकीय जवाहर राजकीय--

आ भी फोटो है आपन बस स्टैंड के आगे की फोटू है यह फिर कोय इंस्टिट्यूट की आगे फोटो हैं जोकि राठौड़ ट्रेवल्स आपा पढ़ सका साफ साफ बिक माइन लोग आरा जारा है पास के माइन --

यह फोटो आपा क्लेअरली देख सकते है मोमडन का फोटो है।

ईम में बोर्ड लगियो है इनमे साफ़ साफ़ बंधन बैंक कुचामन सिटी ब्रांच बी पास में ये ए.यू फाइनेंसियल बेंक भी है।

जवाहर राज्य के उच्च माध्यमिक कुचमन सिटी नागौर का कुछ जगह राज्य की उच्च माध्यम के कुचामन सिटी में सरकारी स्कुल बीजे फोटो कप्म्लेट मेन गेट के फोटो आगे पोस्टर लगा है गवर्मेंट की--

लाइबरी की फोटो बढ़िया आ रही है। आप देख सका ई चीज न--

एक नई जगह बन री है एक माइन आपन फ्लैट हाथ आ सके तो फ्लैट अगर कोई चाहिए तो राजस्थान के माइन रह को बन्दो --

आचा फोटो बहुत ही जोरकी आई है साहब बहुत जोर की फोटो आई हैश्री शाई मेडिकल आपा श्री साहिनाथ नमः --